दो गाड़ीया रखी हुई हैं। जिसमे एक बुलेट है और एक एक्टिवा है। एक आंटी रोड के किनारे --

बट पीली कलर की है और वहाँ पे कुछ लोग है। वहाँ अ और जगह-जगह पेड़ पौधे लगे हैं गमले हैं और उसके सामने एक बड़ा सा --

और खूब साररी बाल्लियाँ दिख रही हैंडंडे दिख रहे हैं जिनपे कुछ कपड़े हैं।

खूब सारे हरे --

सजावट हुई है। वहाँ पर कुछ लोग अपना नृत्य दर्शा रहे हैं और वहाँ पर खुब सारे लोग बैठे के उन --

एक कमरा है जो कि क्रीम कलर से पुता हुआ है। वहाँ पर खूब गाने --